अनेक प्रकार के लेडिस के कपड़े होते है जो आप देख सकते है इस चित्र में यहाँ पर सिर्फ लेडीस का ही कपड़ा है ।